यहां बहुत सारे लोग का चित्र है।

और बीच महारी बनाए हुए हैं।

एक और बिल्डिंग है यहां गोदरेज इंटीरियो लिखा हुआ है और यहां कुछ पेड़ पौधे हैं।

यह एक प्लेस का चित्र है।

जहां बहुत सारे गमले में पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

एक स्कूल बस का चित्र है।

ये बस के अंदर है और बाहर बाउंड्री किया हुआ है।

और कुछ पत्थर का डिजाइन भी बनाया गया--

और कुछ गेंदे का फूल भी है।

दो टेंपू खड़े नजर आ रहे हैं और इस मैदान में बहुत सारे बच्चे हैं और आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

एक अंदर चेयर रखे हुए हैं रेड कलर का एक बाहर भी रखे हुए हैं।

बैडमिंटन रखे हुए हैं।

और एक बोर्ड लगा हुआ है।

डर के बाहर भी एक गेट लगा हुआ है।

बहुत सारे लोग खड़े हैं।

बिल्डिंग के ऊपर एक लाइट लगे हुए हैं।